यहाँ पे देर सा पेड़े-पौधा दिखाया जा जहाँ पे देखिये आप को पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन पेड़-पौधे हैं जो जिसमे दो सुअर को बंधे हुए है जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहा है कलरफूल भी लग रहा है जो काला रंग का सुअर है जो देखने में अच्छा लगता है इसके बड़े-बड़े में पेर भी है पेड़ में बंधे हुए है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है।